मि मिकी माउस का चेहरा बना हुआ है दाएं तरफ एक मॉल नुमा कुछ बना हुआ है।

यहां पे पीछे शीतल पेय जल की एक टंकी बनी हुई है दो वॉश बेसिन लगे हुए हैं।

सामने की तरफ एक सड़क जा रही है दाएं तरफ एक दीवाल बनी हुई है जो पीले रंग से कलर्ड है।

और सामने की ओर देख रहा है इस लड़के ने काले रंग की शर्ट पहनी जैकेट पहनी हुई है और नीले रंग का पैंट पहना हुआ है।

यह एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो काले रंग की है और काफी बड़ी लग रही है।

यह किसी दुकान के अंदर की चीज है जहां पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है।

कुछ बर्तन रखे हुए हैं सामने की ओर एक सफेद पॉलिथीन से ढकी हुई हैं।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़े पीछे की ओर देर सारे घर बने हुए हैं।

जिसके ऊपर हंक लिखा हुआ है नीचे की ओर भी हंक लिखा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप की जगह है जहां पे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है और पूरे पूरी जगह खाली है एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है।

यह किसी स्कूल की फंक्शन का दृश्य लग रहा है यहां पर कुछ लड़कियां कुछ नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं।

यहां पे हर लड़की का जो अ आ उम्र है वो अलग अलग है।

यह राम कृष्णा विद्या मंदिर है इंग्लिश मीडियम स्कूल है।

यह क्लास पी_सी टू ऐट तक है रजिस्ट्रेशन एंड एडमिटेशन ओ ओपन सीट्स लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक टेलीफोन टावर है जिसपे ढेर सारे सैटेलाइट्स और एंटीनास लगे हुए हैं।

शैंपू रखे हुए हैं साबुन रखा हुआ है डार्क फैंटेसी रखी हुई है।

पीछे गारंटीस लगा हुआ है और ढेर सारा मंडप का सामान रखा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग योग करते हुए नजर आ रहे जो लड़कियां हैं।

छोटी लड़की है और बड़ी लड़की है पीछे एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ है।